दोनों साइड बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं सामने एक आदमी दिख रहा है।

एक नदीीी है जिसका पानी नीला दिख हरा दिखाई दे रहा --

यहाँ एक बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है जिसमें सामने बहुत सारे --

बहोत सारे तार लगे हुए हैं साइड में खम्भे बने हैं और सामने --

तीनों के लगी हुईं हैं नीचे चौकोर टेबल बनी है जिसके आमने सामने कुर्सियाँ --

यहाँ एक किचन दिख रही है जिसमें सामने टेबल बनी है जिसमें वाश बेसिन लगा हुआ है ऊपर दो नल --

और एक वाटर प्यूरोफायर लगा हुआ है सामने कुछ बर्तन रखे हुए हैं और साइड में गैस चूल्हा --

डार्क क्रीम कलर की है और इस पर आदमियों के चित्र बने हुए हैं नीचे गैस टंकी रखी हुई है और नीचे रैक बने हैं जो कत्थाई और पीले कलर --

दिखाई दे रहे हैं और दूर कुछ घर दिख रहे हैं और कुछ खम्भे दिखाई दे रहे हैं।

दूर और बहुत सारे बड़े बड़े तूड़ दिख रह दिख रहे हैं और सामने एक घर है जो टीना का है।

पीले कलर की पट्टी बनी हुई है नीचे पटलियाँ दिख रही हैं जिनमें कहीं हरी और सूखी खास दिखाई दे रही है साइड में एक --

यहाँ एक दिख रहा है जो बड़ा है जिसके अन्दर पानी --

कुछ आदमी दिख रहे हैं सामने कुछ पेड़ लगे हुए हैं और एक--

कु कुछ टोकनी रखी हुई हैं और दो गुलदस्ते बने हुए हैं और दो गोल टोकनी --

यहाँ एक बिल्डिंग दिख रही है जो ऊपर सफेद कलर की है नीचे खम्भे बने हुए हैं जो सफ़ेद और --

एक पर कुछ टैटूऊऊ रखे हुए हैं सामने एक काँच दि की खिड़की दिख रही है जिसके बाहर कुछ --

यहाँ एक बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है जिसमें नीचे पीली घास दिख रही ही और --

पीले कलर कीीी ल लाइट लाइन बनी हुई है साइड में एक बना हुआ है और वास --

यहाँ एक स्वीमिंग पूल दिख रहा है जिसका पानी नीला --

बनी हुई है और सामने ये ग्राउंड भी लाल दिख रहा है।

ब्लैक एंड व्हाईट ग्रीन और पीला दिखाई दे रहा है और सामने कुछ बड़े पेड़ दिख रहे हैं जो कुछ हरे और ब्लैक एंड व्हाईट दिख रहे हैं।

यहाँ एक आदमी दिख रहा है जिसके सामने टेबल है और एक ट्रे रखी हुई है हाथ में --

चाय दे रहा है साइड में एक चायड की चाय की बड़ी केतली रखी --

लगी है और उद बैठने के लिए टेबल डली हुईं हैं कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

यहाँ एक स्वीमिंग पूल दिख रहा है जिसका पानी नीला दिखाई देएए रहा है और बहुत सारे आदमी अन्दर --

ऊपर एक बच्चे को फेंक रहा है और उस साइड किनारे पर बहुत से छोटे बच्चों और --

आदमी खड़े हुए हैं पीछे बड़े खम्भे दिख रहे हैं और सामने एक घर दिख रहा है जो --

लगे हुए है और नीचे कुछ दुकाननं --

यहाँ एक नर्सरी दिख रही है जिसमें सामने बहुत सारे पौधे --

हुआ है जिसमें अंदर ।

यहाँ एक बड़ा लोहे का गेट दिख रहा है जिसके ऊपर --

बनी हुई है और बाहर सड़क है इससे बहुत सारी मोटरसाइकिल दिख रही --

यहाँ एक बड़ा सा हॉल है इसमें बहुत सारी लेडीसें --

वो कंधों को हाथों से जकड़े हुए हैं और सभी पानी की बॉटल रखे हुए हैं नीचे रंगीन कलर की--

दीवाल दिख रही है इसकी इस साइड बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं ऊपर सफेद आसमान दिख रहा --

यहाँ एक रेलवे इस्टेशन दिख रहा है जिसमें सामने पट्टी एक साइड नीली --

कलर का पर्दा है और साइड में पिंक कलर का पर्दा लगा हुआ है ऊपर लाल ऑरेंज की पट्टी --